और इस पुल पे एक खंभा गड़ा हुआ है जिसपे एक लाइट लगी हुई है।

और इस बिल्डिंग पे एक पोस्टर छपा हुआ है और इस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे आदमी खड़े--

यह चित्र एक दुकान के अंदर का है यहां पर सामने एक काउंटर है।

जोकि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की ओर जा रहा है और उसके नीचे एक ब्लू कलर का अल्बेस्टर लगा हुआ है।

यह चित्र एक हॉल का है जहां पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

जहां पर बहोत सारे लाल कलर के एम_डी_एच के मसाले के डब्बे रखे हुए हैं।

का रंग पिला हरा काला लाल और भी बहुत सारे।

इस दुकान में कुर्सी भी है बैठने के लिए और सामने काउंटर भी है।

तकियों का रंग उजाला है। इस रूम के दीवार पर एक बोर्ड ल--

आगे एक कुर्सी दिखाई दे रही है और कुर्सी का रंग लाल काला और ओझला है।

इस चित्र में पीछे बहोत बड़ा गार्डेन है गार्डेन पे बहोत सारे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं।

गार्डन के बगल मे भी रेड कलर के रोज़ लगे हुवे हैं और बहुत सारे पौधे लगे हुवे हैं।

सामने एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

और इस स्टेज के पीछे वाइट कलर की दीवार भी है और इस स्टेज के ऊपर एक लड़की है।

सामने एक आदमी है जो कि ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और अपने हाथ में मोबाइल लेकर फोटो खींच रहा है।

इस बिल्डिंग के बाहर एक वाइट कलर गाड़ी भी खड़ी है।

दौरी में बहुत सारे प्रकार के फल भी है और सब औरतों ने साड़ी पहनी है।

जी इस मॉल के अंदर बहुत सारी लाइटें भी जल रही हैं।

और बगल में बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं और बोरो का रंग बैगनी लाल और काला है।

इसके नीचे दुकानों के अन्दर बहोत सारे समाने रखे हुए हैं।

और ब्लॉक के ऊपर बहुत सारी चमाने रखी हुई है जैसे की लाल कलर का कुछ रखा हुआ है और पीले कलर का भी कुछ रखा हुआ है।

सामने एक केतारी दिखाई दे रहा है जो की रस्सी से बांधा हुआ है।

और उसके नीचे एड्रेस दिया हुआ है और बगल में मोबाइल नंबर भी और इस दुकान के बाहर आदमी बैठे हुए--

इस चित्र में दो मंदिर दिखाई दे रहे हैं और एक मंदिर का रंग ऑरेंज और व्हाइट है।

गुफा के अंदर एक पीले कलर की साड़ी पहनी हुई औरत है और बाहर आदमी बैठे हुए हैं।

इस दुकान मे बहुत सारे रैक है और रैक पर बहोत सारे समान रखे हुए हैं।